काफी बड़ी बिल्डिंग दिख रही है जिसमें तीन या चार फ्लोर की बिल्डिंग है और एक डॉक्टर की --

मुस्लिम आदमी ने सामने से मछली खरीदने की औकात रखी हुई है।

यह तस्वीर किसी की घर की फाउंडेशन की है।

और सपोर्ट भी दिया गया है।

यह तस्वीर एक एयरपोर्ट की है जिसमे एक एयर विमान --